सॉरी हम्म पर्दा भी लगी हुई हैं उस पर कलर कलर की डिज़ाइन निकली हुई है यहाँ पर शायद कुछ शादी वगेरे हो रही है आज सिंधु भवन हैं यहाँ पर ला अ लाटा परिवार का शादी हैं।

यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर बहोत सारी फोटो चिपकाई गई है बहोत सारी बहोत ही बोहोत भयंकर फोटो दिख रही है मुझे यहाँ पर फोटो ही फोटो दिख रही है यहाँ पर --